कि हां यहां पे काम चल रहा है एक बच्ची भी खड़ी है वो बच्ची अपना कुछ कर रही है वहां पे--

तो यहां पे आप देख सकते हो--

और बाइक खड़ी है यहां पे ऑटो खड़ा है बिल्डिंग्स है बहुत सारी और कुछ स्ट्रीट लाइट्स भी खड़ी हैं।

तो हां यह कुल देख के बहुत अच्छी है.

ये सारी सब्जियां हमें पैकेट में मिल रही हैं।

ये एक कॉलेज का दृश्य है जहां दो बच्चे खड़े हैं.

दृश्य बहुत खूबसूरत है बहुत ज्यादा--

देखने में बहोत मन लुभावनी सी लग रही --

बहुत खूबसूरत और मन लुभावने सी लग रही है।

यह विश्वविद्यालय नहीं ये स्कूल है।

जो इसे स्कूल बनाते हैं शिक्षा का मंदिर--

यहां गमले हैं पेड़ हैं और छोटे-छोटे पौधे लगा रखे हैं।

तो वह वहां दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकता है।

फार्मेसी की दुकान दुकान नहीं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग --

आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है.

पेड़ हैं और कुछ पोस्टर्स हैं।

जो बहुत अच्छी लग रही है जय मां सरस्वती--

आपको पौधे उगाने के लिए स्पेस दिया जाता है।

ये गांव की औरतें बनाती हैं बड़ी मेहनत से बनाती हैं।

चप्पल नीचे दिख रही हैं इसका मतलब--

बास्केट बॉल वो कैसे खेल रहे हैं पता नहीं--

जो होना भी चाहिए आखिर यह हिस्सा भारत का ही तो है।

जहां लैपटॉप है या शायद नहीं है।

और उसमें से रेलवे इंजन्स के ट्रैक निकाल रही है।

दोपहर का वक्त है बारह बज रहे हैं।

एक जगह जहां कई सारे पेड़ हैं पौधे हैं।

इतनी साफ सड़क दिल्ली में तो नहीं हो सकती।

एक अंकल खड़े होके यहां पे--

उंगलियों के लिए कुछ बना रहे हैं।

मछलियों से घिरा हुआ यह इलाका जहां एक नदी है।

कि उसे कौन सी नोटबुक खरीदनी चाहिए।

एक फोटो जो आसमानी ऊपर से ली गई है।

जहां ज्वेलरी बेची जा रही है।

अगर आपकी गाड़ी भी खराब हो तो आप भी यहां जा सकते हैं।